इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी क्रीम फेसवॉश बहुत सारे सुन्दर बनाने --

रखी हुई है और यहाँ जाने के लिए एक रास्ता भी बनी हुई है।

इसमें बहुत ऊँची-ऊँची इमारतें दिखाई दे रही हैं।

यह एक स्वीमिंग पुल है। जिसमें जाने के लिए बहुत सी सड़क पट्टियां लगी हुई हैं।

यह हाल ही में खुला एक नया जेन्स पार्लर हैं। जहाँ एक आदमी एक दूसरे आदमी के बाल काट रहा है।

और यहाँ नाव भी बनी हुई हैं। जिन पर लोग यात्रा करते हैं और संगम की शैर करते हैं और यहाँ बहोत सारे अन्य दरवाजे भी दिखायी दे रहे हें।

यह एक घाट की तस्वीर है। जहाॅं पर पानी भरा हुआ हैं और पास ही में बहोत सारें मंदिर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ बहोत सारे भवन बने हुए हैं।

यह एक दशाश्मेव घाट की तस्वीर है। जहाॅं पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं।